जो पीली रंग की शर्ट पहना है एक पीली और काले रंग की रेलिंग दिखा रही है ।

टंगा हुआ एक पाइप दिखा रहा है जो सफ़ेद रंग का है वो सामने कछु मशीने दिखा रही --

इधर सामने एक लाल रंग का बोर्ड दिखाया --

यह सब डांस कर दिख रहे --

एक नीले रंग की झील दिखाई दे रही एक कुर्सी दिखाई दे रही।